इस दुकान का नाम कोमल डेयरी है और यहाँ पे दूध मिलता है और यहाँ पे शुद्ध घी और मक्खन भी उपलब्ध है| यहाँ का मक्खन बहुत ही स्वादिष्ट रहता है।